एवं जंगल में कोहरा छाया हुआ है।

मैदान के बाहर बहोत सारे हरे भरे फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई गई छवि में एक छोटा सा दुकान दिखाया गया है।

आसपास का वातावरण काफी शांत एवं स्वच्छ है।

दिखाई गई छवि में एक बड़ा सा इमारत लगाया गया है इमारत का रंग काला एवं स्किन रंग का है।

कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जोकि काले रंग की कुर्सी पर बैठा है।

एवं बहुत सारी अनेक प्रकार की लाइट एं भी स्टेज पर लगाई गई हैं।